बहुत ही उचित दुकान लग रही है हमारे आस-पड़ोस में आस-पड़ोस के लोग बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते होंगे इस दुकान से --

कितने खूबसूरत मौसम में बच्चे अपनी महिलाओं के साथ कितना मजा कर रहे होंगे यहां पर बहुत --

और अपने जीवित के बारे में सोचती हूं ।

मेरा सपना है मैं भी ऐसी ही जगह पर कहीं जाके बैठूं।

कार का तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है ।